हरा भरा अ लोहा का रॉड भी लगा हुआ है।

यहां बगल में एक मंदिर है।

रेलवे स्टेशन है। यहाँ नीचे रोड सीमेंट का पत्थल का है।

अ नीचे टाइल्स लगा हुआ है।

यहां बहुत भीड़ हैं यहां बहुत पूजा हो रहा हैं।

के अंदर डिब्बा रखा हुआ है।

इस कार का इंजन ऊपर वाला उठा दिया गया है।

एक आदमी गुलाबी कलर का सर्ट पहना हुआ है।

यह क्वालिटी रेस्टोरेंट है।

यात्रिक ऊपर में ब्लू कलर का लिखा हुआ है।

दीवार में टी_वी लगा हुआ है।

ऊपर में बांस का लकड़ी गया हुआ है।

यह बहुत बड़ा घर है यहां बाहर में तीन बाइक लगा हुआ है।

जो काला कलर का पेंट और सफेद कलर का शर्त पहना हुआ हैं।

यहां ऊपर में एक लाइट भी लगा हुआ है।

यहां बहुत बड़ा दुकान है।

यहां बहुत भीड़ है यहां बहुत सारा औरत बच्चा है।

बीच में बहुत बड़ा तालाब है।

यहाँ ऊपर में बहुत सारा चिपकाया हुआ है।

और लोहा का एक दो गोदरेज जैसा रखा हुआ है।

एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

यहां बहुत बड़ा रूम है यहां दो बेड हैं।

यहां बहुत सारा कुर्सी रखा हुआ है।

यहां बहुत सारा लोहा का मशीन रखा हुआ है।

यहां बहुत सारा सफेद कलर का लाइट लगा हुआ हैं।